इस तस्वीर में हमें बड़ी-सी बिल्डिंग नजर आ रही है और लाल कलर की एक बड़ी-सी गाड़ी खड़ी हुई है और बाकी भी कारें --

लोगों की भीड़ नजर आ रही है काफी सारे लोग है इसमें पेड़ लगे हुए--

एक ठेले पर रखे हुए हमें इसमें आलू और सेब नजर आ रहें तरबूज रखे हुए हैं बड़े बड़े--

मंदिर नजर आ रहा है उसमें पूजा कर रही है एक औरत वो नजर आ रही है और--

अ-जिम बना हुआ है जिम में मशीनें रखी हुई हैं बड़ी-बड़ी और उसमें एक लड़का है ये जो हाथ में मोबाइल लिए अपनी सेल्फी ले रहा है।

एक दुकान नजर आ रही है जिसमें बैग रखे हुए हैं छोटे बड़े कई तरह के बैग --

और भी बहुत सी चीजें हैं जो साफ नजर नहीं आ रही हैं लेकिन दूर से नजर आ रहा है कि बैग रखे हुए हैं बहुत सारे।

और उसके पास ही बैठे हुए लोग नजर आ रहे हैं पीछे भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक आदमी जो बड़ी सी बैंच पर बैठा हुआ है वो दिखाई दे रहा है हमे--

और चीज नमकीन वगैरह के होते हैं वो लटके हुए हैं काफी अंडे और और भी चीजें रखे हुए हैं एक काउंटर के ऊपर--

वाटर कैचमेंट लिखा हुआ है उसमें वो हमें नजर आ रहा है साइकिलें भी खड़ी हुई है बेंच रखी हुई है।

नृत्य करती हुई हमें डांस करती हुई हमें बहुत सी महिलाएँ नजर आ रही हैं और ये काफी रंग-बिरंगी वेशभूषा में है।

और ये सब एक साथ नृत्य कर रही हैं पीछे मूर्ति भी बनी हुई है।

इंस्टेंट बुकिंग होटल्स ट्रांसपोर्ट का ये बोर्ड लगा हुआ है इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है।

और ये किताबों की दुकान है काफी सारी किताबें इसमें जमी हुई नजर आ रही है।

और इसके पीछे जो होली क्रॉस होता है क्रिश्चन का--

पानी में हमें दो भैंसे नजर आ रही हैं एक बड़ी एक छोटी।

इस तस्वीर में आदमी के सर पर डलिया रखी हुई है।

बड़े-बड़े पत्थर एक दूसरे के ऊपर जमे हुए हैं और एक आदमी नीली टी-शर्ट में नीचे खड़ा है लाल बैग उसके कंधे पर है।

इस लाल कलर की और लाल और क्रीम कलर की बिल्डिंग है ये रेड और व्हाइट बिल्डिंग --

उस पर बोर्ड लगा हुआ है स्मॉल एनिमल --

यह एक पार्क का है ना अह सीन यहां पर ये ना ज्यादा हरियाली नहीं है और जो--

और फ्लावर से फूलों से इसको सजाया गया है।